यहाँ पे टेबल्स और बहोत सारे चेयर्स नजर आ रहे हैं और उन टेबल्स पे छोटे-छोटे बहोत सारे पानी की बॉटल्स से रखे हुए हैं।

यहां पे बहोत सारे लोग भी खड़े हुए नजर आ रहे हैं।

दो सोफा भी है और वही सोफा के पास बहोत सारे बैलून से डेकोरेशन किया गया है।

बीच में एक पोल है और उसके पीछे एक टी_सी का खंबा भी दिख रहा है और बाजू में कुछ घर भी दिखाई दे रहे हैं।

और उसके हाथ में एक माइक भी दिख रहा है और एक हाथ में पेपर पकड़ा हुआ है पीछे एक बड़ा सा पोस्टर भी लगा हुआ है।

यहां पे सामने एक आदमी अपना बैग लेके चलता हुआ भी दिख रहा है और वहां सामने एक खंबे पे कैमरा भी लगा हुआ है।

और वो स्कैनर फोन पे का है और वहीं पे कुछ कपड़े टंगे हुए भी नजर आ रहे हैं।

ये जिम है और यहां जिम में ट्रेडमिल मशीन पे एक आदमी वॉक कर रहा है।

उसके पीछे साइड एक बड़ा सा मिरर भी नजर आ रहा है।

यहां रूम में लाल और पीले रंग के फूलों से सजाया हुआ है और कुछ लाइट्स भी लगाए हुए हैं।

यहां पे कुछ लोग गोल सर्कल बना के अपने हाथ में हाथ पैरों पे रखे के सर झुका के बैठे हुए हैं।

यहां एयरपोर्ट पे एक बड़ा सा एरोप्लेन खड़ा हुआ नजर आ रहा है।

और कुछ माले भी रखे हुए हैं मूर्ति के आजू बाजू में दो झंडे में रखे हुए हैं।

यहां पे छोटे छोटे घास है और बीच में एक रोड है।

और पीछे साइड बड़ा सा दीवार पे पोस्टर भी लगा हुआ है।

यहां पे बहुत सारे बेनच रखे हुए हैं और उन बेनच पे बहोत सारे स्टूडेंट बैठें हुए हैं।

और यहां पे पीछे बहोत सारे लोग घूमते हुए नजर आ रहे हैं और अलग अलग तरह के फूल भी दिख रहे हैं।

ये एक सैंडविच नाम का कैफे हैं और इस कैफे को बहोत अच्छी तरह से सजाए हुए हैं।

दरवाजा खुला है और अंदर कुछ लोग भी नजर आ रहे हैं।

यहां पे सिंगिंग कंपटीशन चल रहा है जो स्टेज पे लोग गाना गाते हुए माइक की तरफ खड़े हैं।

यहाँ पे एक सोफा है और दीवार पे एक ए_सी लगाई हुई है।

ये एक पोस्ट टेलीग्राफ के ऑफिस है और ये ऑफिस के बाहर बहोत सारे गाड़ियां खड़ी हुए हैं।